भीड़ बहुत है टैक्सी बिल्डिंग और दुकानें हेंगी लाइट के तारों के कुछ लोग भी हैं।

पेट्रोल पंप है इसमें टू व्हीलर गाड़ी और लोडिंग गाड़ी है इस रिक्शा वगैरा हेंगे पेट्रोल भरवा रहे हेंगे लाइटिंग लाइट के खंभे घर हेंगे यहाँ पर कुछ दुकानें है।

टैक्सी और बड़े-बड़े होतें हैं ना ट्रैक्टर वगैरा और कुछ गाड़ियाँ फोर व्हीलर वगैरा हैंगी यहाँ पर और कुछ लोग हैंगे।

यहां पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ हेगा और बिल्डिंग हेंगी और पेड़-पौधे बड़े-बड़े टावर्स और टैक्सियां और कुछ लोग भी हेंगे यहां पर।

ये एक रेलवे स्टेशन हेगा यहां पर तीन या फिर चार पटरियां हेगी जिन थोड़े-थोड़े बीच में उनके यहां पर उसमें कुछ लिखा हुआ है भी --